पेड़ ही पेड़ है यहां पर पानी के अंदर थी घास उग गई है।

एक बैठा हुआ है और चार खड़े हुए हैं यां--

यहां पर पूरी एक सैंपलिंग खड़ी हुई है यहां पर चर्च के जो मेन होते हैं।

दरवाजा है वाइट कलर का उसके ऊपर कांच लगा हुआ है।

ये एक भईया खड़े हुए हैं जिन्हें व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

बस व्हाईट और रेड कलर की खड़ी हुई है।

यहां पर एक लैपटॉप भी रखा हुआ है।

उम्म ये एक स्टेट बैंक ए_टी_एम है।